जहां ए --

गेट दिख रहे हैं बाहर रोशनी है।

यह चित्र एक समारोह का है जहां काफी सारी महिलाएं हैं|

बालकनी दिख रही है। लोहे की रेलिंग है।

आसमान में बादल और पेड़ नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे शेल्फ बने है बहुत सारी दवाइयां रखी हुई हैं।

एक लोहे का शटर हे। लोहे की जालियों की खिड़कियां है।

बांध के रखा है मलवा डला हैं।

यह चित्र एक बाहार खुले सी जगह का है जहां एक आदमी --

कुछ हरे रंग के पेड़ लगे हैं।